पीछे एक फोटो फ्रेम लगा है।

और नीचे उतने के लिए सीढ़ी दी गई है यहां पे नदी है।

ये कपड़े के दुकान है। कपड़े के दुकान में बहोत सारे कपड़े रखे हुए हैं और नीचे टाइल्स लगे हुए हैं और बैठने के लिए कुर्सी टेबल रखे हुए--।